यह एक रूम हैऔर यहां पे--

और कुछ पौधा जैसा वहां पे है।

खिड़कियों पर कर्टनस हैऔर ये आदमी--

ये एक मॉल हैं और यहाँ पे लोग--

और पीछे एक बोर्ड है और एक आदमी खड़ा हुआ है।

ये एक अलमारी हैऔर इसमें कुछ चीजें भरी हुई हैं।

और कुछ बाइक्स हैं एक आदमी बाइक पे है।

उसने पिंक कलर की शर्ट पहनी हुई है।

और यहां पे एक रॉड भी दिख रही है।

और यहां पर दो आदमी आ रहे हैं उनके सर पे छाता है।

स्विच लगा हुआ हैऔर एक बोर्ड नजर आ रहा है।

ये कमरा है और यहां पे कुर्सी हैजो कि ब्लैक कलर की है।

एक एटीएम हैऔर उसके सामने एक आदमी खड़ा हुआ है।

जैकेट और ब्लैक कलर का पैंट पहना हुआ है।

उसके पैरों में चप्पल है और उसके बालो का रंग ब्लैक है।

पेड़ दिखाई दे रहे हैं और यह आदमी खड़ा हुआ है इसने ब्राऊन कलर का पैंट पेहना हुआ है।

ये एक क्लासरूम है और यहां पे बच्चियां पढ़ रही हैं।

और कमरे की फ्लोरिंग की हुई।

और ब्लैक कलर का पैंट हैं।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

और इन्होंने खुद भी ब्लू कलर की अहह ड्रेस पहनी है।

और यहां पे ग्रिल की गई है और दरवाजे पे वाइट कलर का पेंट है।

ये एक नदी है और यहां पे दो आदमी खड़े हैं इनके साथ एक शिकारा है।

और टेबल का रंग ब्राउन कलर है और चेयर्स का रंग ब्राउन और ग्रीन कलर की है।